खेत को बांस की लकड़ी से घेरा गया है और थोड़ी दूर पर कुछ घर दिखाई पड़ रहे है।

सामने कुछ दरवाजे दिख रही है जिसमें कांच लगे हुए हैं।

इस ग्रुप में दस बच्चे और एक टीचर को दिखाया गया है जो शायद एक ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं।

चारों तरफ पेड़ पौधे भरे हुए हैं दीवार के अंदर भी कुछ पेड़ है और कुछ पेड़ बाहर भी है बगल में एक झोपड़ी को दिखाया गया।

उसके बाद लोअर डिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक--

रस्ते का रंग गुलाबी और पीला है।

बाहर मे खड़ा आदमी हेलमेट लेकर खड़ा है।